बीच में एक मंदिर है जो वाइट कलर का है ऊपर ग्रीन येलो और रेड कलर की इसकी गुम्मज हैं।

यहां पर एक वाइट कलर का रूम है रूम में बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और जिन पर फूलों की मलायें लगी है।

और पूरा अंदर से यह व्हाइट कलर का है ऊपर छत ब्लैक कलर की है।

यहां पर एक शॉप है जो अंदर से ब्लू कलर की है इसमें बहुत सारी आलमारियां लगी हुई है जिसमें सामान भरा हुआ है।

और बहोत सारा सामान अलमारियों के सामने टंगा है कुछ रस्सियां बंधी है जिस पर सामान टंगा हुआ है कुछ टेबल रखी है।

इसमें एक विंडो खिड़की लगी है जो लोहे की जाली की है और एक पोस्टर भी लगा है एक--

यहां पर एक श रेस्टोरेंट है जो ढाबा के नाम से ऊपर ब्लैक और ब्राउन का इसका पोस्टर लगा हुआ है।

प्रेस के नाम से एक बंद है और एक खुली है जिसमे येलो कलर की लोहे की दोनों में शटर लगी है।

सामने एक पंखा लगा हुआ है पूरा रूम व्हाइट कलर का है सामने की जो दीवार है वो--

इसमें पौधे लगे हैं दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल है और ब्लू कलर के लोहे के कुछ स्टैंड्स लगे हुए हैं ऊपर की तरह आस पास भी घर है।

बेड लगा है जिस पर व्हाइट बेडशीट ब्राउन ब्लैंकेट और--

पीछे की तरफ स्कूल का पोस्टर लगा है जो लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी का है जो--

और पीछे कुछ स्ट्रीट लाइट और लैंप्स लगे हुए हैं सामने की तरफ भी कुछ सामान--

सामने ही एक वाइट कलर का पोस्टर लगा है कुछ छोटा सा पार्क बना है जहां पे ग्रीन कलर की घास लगी हुई है बहोत सारी डिजाइन बनी हुई है।

सामने से रोड जा रही है और कुछ बाइक स्कूटी भी खड़ी है।

बड़े पेड़ भी हैं सामने से रोड है और कुछ जगह खाली है पीछे काफी सुंदर हरियाली है क्योंकि बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो ब--

बैनर लगे हुए हैं दीवारों पर जो फूड आइटम्स के हैं सामने भी एक बहोत अच्छा वॉलपेपर लगा हुआ है।

और जिसकी बाउंड्री येलो और ग्री ब्लू कलर की है ऊपर की तरफ रेड कलर है छत में वाइट कलर है।

यहां पर एक हॉल है जो अंदर से व्हाइट कलर का है जिस कलर का स्टेज बना हुआ है जो ऑरेंज --

व्हाइट लाइनिंग वाली शर्ट टंगी हुई है नीचे की तरफ भी बहोत सा सामान यहां पे बिखरा हुआ--